ये फोटो आपको दिखाई दे रही है जिसमें बहुत सारी कुर्सियां वगैरह लगी हुई हैं ये कोई --

लाइब्रेरी लग रही है और कुछ बैग वगैरा भी रखे हुए है सामने कुछ पौधे भी लगी हुई है।

मिठाई की दुकान लग रही है जिसके आगे कुछ कैरेट रखे हुए हैं दो पानी के रखे हुए हैं।

ये फोटो आपको दिखाई दे रही है कोई दुकान की फोटो है जिसमें कुछ सामान रखे हुए हैं फेसवॉश तेल वगैरह।

पड़े हुए हैं और पर्स में कुछ अखबार वगैरा भी रखे हुए हैं बहुत ही ज्यादा जामुन है ये।

ये फोटो आपको दिखाई दे रही है ये कोई प्ले फॉर्म का दृश्य है जिसमें कुछ टेबलें भी लगी हुई हैं।

बोहोत सारी महिलाओं और व्यक्ति आए हुए हैं और दो तीन व्यक्ति --

यह फोटो आपको दिखाई दे रही है यह कोई होटल का दृश्य है जिसमें कुछ लाइटें वगैरह लग रही है।

और कुछ हरे कलर में हैं और वाइट में नाम लिखे हुए हैं आसपास कुछ मकान दिखाई दे रहे हैं रोड पे कुछ --

तालाब वगैरा की फोटो है जिसकी आगे पीछे पेड़ पौधे वगैरे लगे हुए हैं और --

दो टेंपू खड़े हुए हैं और एक व्यक्ति--

और एक व्यक्ति एक महिला भी दिखाई दे रही है कोई टेंपू का ऐड कर रहे हैं।

यह फोटो आपको दिखाई दे रही है जिसमें तीन लड़के बैठे हुए हैं और कुछ किताबा --

और कुछ फोन पे लगे हुए हैं ये कोई लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं पढ़ाई कर रहे हैं ऊपर बैग रखे हुए सामने एक हनुमान जी की तस्वीर भी--

आपको दिखाई दे रही है कोई मेडिकल या स्थान की फोटो है जिसमें सामने कुछ बारी पे रेड कलर में लिखा भी हुआ है।

एल_ई_डी बल्ब भी लगी हुई है और कुछ पीछे टॉवल छापर भी पटरी का नाम रखा हुआ है।

परचून की एक दुकान है या बुक सेंटर कुछ है जो कुछ बुक है बुके रखी हुई है और कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे है।

इस फोटो में बहोत सारे टमाटर दिखाई दे रहें जो कई रेड कलर की और कुछ पीले भी हैं।

कुछ झोपड़ियां हैं कुछ मकान और कुछ पेड़ वगैरा धोरे डिल्ले दिखाई दे रहे हैं और कुछ --

इस फोटो में आपको ये डम्बल वगैरा दिखाई दे रहे ये कोई जिम का दृश्य है जिसमें बहोत सारे अलग अलग तरह डम्बल और रोड़ें --